एक बड़े से ग्राउंड के पास में छोटा सा एक कैंटीन --

ये रात की तस्वीर है और बाजू मैं एक छोटी सी टेबल रखी हुवी है और उसके ऊपर कुछ रेड का कपड़ा है।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

और पीछे वाइट के परदे लगे हुए हैं।

और पीछे कुछ बच्चे गार्डन में--

एक छोटा सा रूम हैं छो रूम में--

एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है जो ग्रे कलर का है और एक टेबल में मिश्रा डेयरी --

और छत में दो छतरियां लगी हुई है।

बोर्ड है जिसमें तनिष्क लिखा हुआ है और ये रिसेप्शन है और रर बाजू में कुछ --

दो लेडिस है जो की मछलियां बेचती हुए नजर आ रही है।

एक लड़का येलो कलर का टी शर्ट पहने हुए खड़ा है बाजू में एक छोटी सी पिंक कलर की बोर्ड लगी हुई है।

दो अंकल लोग खड़े हुए हैं और पीछे एक बाइक है और एक बैनर लगा हुआ है जिसमें कोको कोला लिखा हुआ है।

एक छोटा सा झरना है झरना से पानी--

लैहरें आ रही है और पूरा पथरीला है और ये पथरीला पत्थर ब्राउन कलर का है और इसमें नीचे काईया लगी हुई है।

और पिंक कलर की लाइटें जल रही है।

ब्रिज है ब्रिज के नीचे में चार पांच बाइक खड़ी है जो जा रही है और एक बड़ी गाड़ी है।

बाजू में वाइट कलर की खिड़की है उसके बाजू में--

ग्रे कलर के पर्दा लगा हुआ है उसके पीछे में ब्लू कलर की कुछ छवि बनी हुई है।

सामने एक कार खड़ी है कार के जस्ट सामने एक बड़ा सा--

गार्डन है गार्डन की बाजू में एक्टिवा गाड़ी खड़ी हुई है।

उसके बाजू में रोड में एक लड़का खड़ा हुआ है लड़का खड़ा है उसके सामने में एक बाइक है।